ये पोस्टर कोरोना टिका के लगे हुए हैं पोस्टर के साइड में एक नर्स बैठी हुई है और यहाँ पे पेशेंट के बैठ --